इस में एक मॉल के सेंटर पॉइंट को दिखाया गया है।

इमेज में एक बस को दिखाया गया है जो की बस की जो कलर है वो पीले रंग की बस है।

इमेज में एक पेट्रोल पंप को दिखाया गया है जो कि पेट्रोल पंप की जो छत की कलर है वो सफेद रंग से रंगी हुई है।

उसके आगे में कुछ गाड़ी जाती हुई दिखाई जा रही है।

उसके ऊपर में कुछ पीले रंग की आकृति में लिखी गई है और उसके अंदर कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

वूड पेर हरे और सफेद रंग से कुछ लिखा गया है।